केला भी दिख रहा है अंगूर भी दिख रहा है और करेट भी दिख रहे है आदमी इंसान भी है यहाँ पे और एक इंसान बैठा हुआ है।

दुकान के यह मंडी है और इसमें कलिंदर भी दिख रहा है अंगूर भी दिख रहा है तराजू भी दिख रहा है पेठा भी दिख रहा है खजुर भी दिख रहा है पेपर भी है और बहोत कुछ दिख इसको ढँका हुआ है।

ये मेरे को लग रहा है फल दुकान है सब्जी है केला भी है टमाटर भी है मूली भी है भाजी भी--शिमला भी क्रेट भी है है।